यह एक अ मुझे वेडिंग रिसेप्शन लग रहा है जहां पे एंट्री एक नंबर रखी हुई है।

एंट्री एक नंबर धमाकेदार होने वाली है एकदम अच्छा है।

मोबाइल रिपेयरिंग का भी है होता है वहां पे काम और कुछ बाइक भी खड़ी हुई है।

और भी अच्छी सी वहां पे अंदर कोई काम भी कर रहे हैं वहां पे आप जा सकते हो।

ये एक वहां पर हार रखा हुआ है वहाँ पे नेकलेस है।

मंगलसूत्र रहे हैं चांदी है सिक्का है और बहुत अच्छा सा टेबल है।

यहां बिल्डिंग है यहां स्ट्रक्चर है मैन्युफैक्चरिंग जो है।

कार वॉशिंग का काम जो हो रहा है बहोत अच्छे से हो रहा है और --

हो सकता है यहां पार्किंग एरिया है बहुत सारी कार खड़ी है स्कूटी खड़ी है बाइक खड़ी है।

और कुकर है और गैस पे जो गरम करते हैं वो इलेक्ट्रिक गैस भी--

और बनाने वाला बहुत सारा समान है यहां पे जो बेचने के लिए दुकान पे रखा है कस्टमर इसे देख के अट्रैक्ट हो और लेने का मन हो।

अच्छा सा मंदिर है यहां पे लोग आते है घूमने के लिए रहने के लिए--

यहाँ पे आते जाते रहना चाहिए आपकी एक्सरसाइज और आपकी अच्छी--

आते हैं और अच्छे से लक्जरी लग रही है जहां पे लोग आते हैं और--

यहां पे योग हो रहा हैं पांच छः लोग गार्डन में योग कर रहे हैं।

साइड में तीन चार बिल्डिंग भीं हैं और बहोत सारा अच्छा लग रहें है।

दो आते है के_वाई_सी के लिए आते है यहां पे गांव के लोग ही सब आए हुए हैं।

यहां पे लोग अच्छे से खासे खेती वेती करते हैं वैसा लग रहा है पेड़ है।

घर भी बना हुआ है लोग रह सकते हैं बहोत ज्यादा हरा भरा है।

बहुत अच्छा सा नेचर है बहुत अच्छा खासा बादल निकला हुआ है अच्छा लग रहा है देख के।

अच्छा सा रूम है व्हाइट कलर का टाइल्स है पिंक कलर का वॉल है।

र बन रहे हैं ऑफिस स्टॉप कर रही हूं नाप रही हूं कैसे बनाना है उनको स्ट्रक्चर उनको देखना है उनके अपने आप से जुड़े --

यहां कुछ पूजा हो रहा है ये जूतियां पूजा ही है।

ओर यहां पे लोगके खाना खा सकते है बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है देख के ब्यूटीफुल सा नजारा है।